स्टील नाम लिखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है विजय।

यहां पर छोटी बड़ी मछली पड़ी हुई है।

और एक टेबल है उसके सामने। उसपे हाथ रखी है उसने और उस और व्यक्ति खड़े हुए हैं उसके सामने।

तौलिया टंगा हुआ है गुब्बारे टंगे हुए है।

यहां पर सामने एक तीन मंज़िली सी इमारत है।

और यहां पर सामने कुछ बोर्ड लगे हुए --

सामने गेट पर एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है बहोत बड़ा।

इस रूम के अंदर काफी सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

और यहाँ पर सामने काफ़ी सारे गुब्बारे टंगे हुए हैं।

काफी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और यहां पर आसपास कुछ व्यक्ति भी हैं।

शीशे का गेट लगा हुआ है।

और वहां पर एक गाड़ी खड़ी है लाल कलर की।

यहां पर नीचे स्विमिंग पूल में वाटर रेसिंग हो रही है।

और यहां पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ है पार्क में।

और यहां पर सामने कितने सारे बेड पड़े हुए हैं।

काफी लाइट बर रही है इसमें--

यहां पर एक भट्टा है।

कुछ ईंट टूटी हुई हैं कुछ सबूती पड़ी हुई हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ी नदी है।

यहां पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई है।

यहां पर सामने एक दुकान है।

और यहां पर एक सफेद कलर की कार खड़ी है जो जिसे वाश किया जा रहा है।

और यहां पर एक व्यक्ति कार वाश कर रहा है।

यहां पर सामने एक दुकान है।

उसमें आइसक्रीम रखी हुई है।

इस पर लिखा हुआ है बर्गर हीरो --

और कितनी ही सारी बुक अंदर रखी हुई है।

और यहां पर और भी अलग अलग सामान पड़ा हुआ हैं।

उस व्यक्ति का रूम है।

एक झरना सा आ रहा है जिसमें से कुछ पानी आ रहा है।

उसके पास चॉकलेट की आइसक्रीम और केक रखे हुए हैं।

जिम की काफी सारी प्रकार की अलग अलग मशीनें रखी हुई है।